मुझे इस इमेज में बड़ा सा तालाब दिख रहा है और इसमें पेड़ बहुत सारे पेड़ है बड़े-बड़े है।

मुझे इस इमेज में बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

मैं भगवान है और इसमें चेयर है।

मुझे इस इमेज में बहुत घना जंगल दिख रहा है।

और उसमें गाड़ियां है और बहुत सारे लोग हैं।

मुझे इस इमेज में बोहोत सारी बिल्डिंगे दिख रही है और विंडो दिख रही है।

और बहुत बड़ा ग्राउंड सा दिख रहा है।